और एक पेन रखा हुआ है एक काग अ कागज़ भी रखा हुआ है टेबल पर।

एक मैदान भी पड़ा हुआ मैदान भी दिखाई दे रहा है जिसमें थोड़ी-थोड़ी सी हरयाली दिख रही है।

एक ब्लू कलर की शर्ट और ब्लू कलर की जैकेट पहनें हुए है एक रेड कलर की शर्ट रेड कलर की जैकेट पेहने हुए है।

उनके साथ दो महिलाएं भी खड़ी हुई है वो भी भाईट के कपड़े पेहने हुएं हैं।

इस तस्वीर में एक बहुत पुरानी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।